यहां पर एक घड़ी भी लगी हुई है जिसमें पांच बज रहे है यहां पर एक सेंटर ए_सी भी लगा हुआ है।

ये एक इमारत है जिसका आगे का हिस्सा लाल रंग का है तथा पीछे का हिस्सा सफेद रंग का है।

पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे है पूजा का थाल भी यहां रखा हुआ ---

ये एक हॉल है जिसे गुबारों से सजाया गया है यहाँ पर बहोत सारी लाल रंग की कुर्सियां रखी गयी हैं।

बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और इस दृश्य का आनंद उठा रहे हैं|

यह किसी पहाड़ी पर बनाया गया लकड़ियों का एक पुल है|

इस कांच के गेट पर और बीच में और साइडो के दीवारों पे कई मॉडल और फिल्मी सितारों की फोटोज लगाई गई है।